चित्र में एक फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है और इसमें बहोत सारे--

यह दो बसा दिखाई दे रहा है और एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है इसमें विल्लजेर्स इनके ड्रा-ड्राइवर बोहोत दूसरे गांव जाने के लिए भी तैयार है इसमें दो आदमी--

और सामने बड़ा बड़े बड़े बिल्डिंग है और बोहोत बड़ी पानी का समंदर बड़ा आ है ।

चित्र में पहाड़ी दिखाई दे रहा है और सुन्दर सा माहोल दिखाई दे रहा है बा सामने बा--